जिसके बाहर बड़ा सा लोहे का गेट लगा है।

यह एक बहोत ही सुंदर मंडप सजाया गया हैं।

जो कि सन दो हज़ार दो सोलह मार्च में निर्माण किया गया है जिसके चारों तरफ लोहे की जंजीरों का कार्य भी किया गया है।

यह एक बहोत ही सुंदर पर्वत का दृश्य है सामने एवम् पीछे की ओर --

यह किसी सरकारी कार्यालय का प्रथम द्वार लग रहा हैं जिसके गेट पर एक ताला लटका है।

यह एक बहुत ही पुरानी मंदिर एवम् --

बैल की कलाकृति बनी है जिसके गले में एक फूलों की माला रखी है | जिसके ऊपर छत भी बनाई गई है।

यह हैं एक मंदिर का सुंदर अ-पार्ट बनाया गया हैं जो की श्री जे मा मदारण देवी--